उसके पीछे एक खिड़की है एक दरवाजा है।

पीछे में स्प्राइट का बोतल कोका कोला का बोतल कुछ माजा किया ले कुछ का बोतल है उसके बगल में कार्टून है।

ब्लू कलर का पैंट पहने हुए खड़ा है उसका भी चेहरा ढका हुआ है।

प्लांट बनाया हुआ है जो ब्लू करके चारों कोनो पर ढका हुआ है उसके बगल में खाली--

अन्दर में पिला कलर का सिमोशन किया हुआ है।

नदी है नदी में पुल है पुल पे बहुत सारे व्यक्ति इधर से उधर पार हो रहे है बहुत लोग नहां भी रहे है।

बड़ा दुकान है सामने में एक व्यक्ति जो कि हाथ में कुछ पैकेट लिए हुए हैं जो ले के खरीद के जा रहा--

रेड कलर का फोन का कवर लगा हुआ है ब्लैक कलर का साड़ी पहने हुए हैं।

बगल में एक ताड का पेड़ है जो मकान के बराबर की लंबाई है।

सामने तीन बाइक खड़ी है।

वहां ऊपर में सिलिंग फैंन है जो लगा हुआ है।

एक बिल्डिंग है जो बिल्डिंग ईंट से बनाया हुआ है जो किसी प्लस्टर नहीं किया हुआ है।

उस लड़की से बाल बंधा हुआ है।

एक बहुत बड़ा सा प्लांट है जिसमें चारों तरफ से पेड़ पौधा से लगे हुए हैं।

एक बहुत बड़ा सा हॉल है हॉल में अंदर में कुछ कुर्सी टेबल लगाए हुए हैं।